ऊपर से एक बहोत बड़ा बाग दिख रहा है जिसमे पेड़ लगे हुए हैं और जमीन पे घास है।

सामने एक बिल्डिंग दिख रही है जहां पे बाहर सी_टी स्कैन विभाग जिला चिकित्सालय पुरुष बदायूं लिखा हुआ है और बाहर एक आदमी पन्नी पकड़ के जा रहा है ।

सामने एक मूर्ति बनी हुई है जो गोल्डन कलर की है उसके पीछे सफ़ेद कलर की त्रिपाल से टें --

सामने एक बोर्ड लगा हुवा हैं जिस के ऊपर फूड ट्रैक लगा हुआ हैं और एक बिल्डिंग बनी हुई हैं ये पेड़ की झाड़ियाँ दिख रही हैं उसके नीचे शॉप्स बनी हैं।

दीवाल पे लगी हुई है और स्विच बोर्ड लगा हुआ है सामने खिड़की लगी हुई है।

और अ -- किसी चीज को पकड़ा हुआ है और उस पर फूल लटक रहे हैं और हाँ एक और आदमी उसे पकड़ के खड़ा हुआ है जो वाईट कलर की लुंगी और वाईट कलर की बनयान पहना हुआ है सर पे वो कुछ बांधा हुआ है।